तथा इस भवन में गाड़ी रखने का भी सुविधा उपलब्ध है।

तथा इस बगीचे में बाइक पर्किंग और कार पार्किग की जगहे भी उपलब्ध है।